और देख ही रहे हैं एक आदमी बात कर --

गूगल पे पेटीयम --

ये एक दुकान है जो बुक्स बेच रही हैं और यहाँ पे एक बाइक खड़ा हुआ --